यहाँ पे हमें एक घर दिखाई दे रहा है और वह उसके पीछे बहोत सारे छोटे-छोटे घर हैं गली हैं और एक --

सभी तरह के कपड़े बिकते हैं और इस शुभम वस्त्रालय दुकान के आगे दो केला के पेड़ लगे हुए हैं ।

लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं शीशा के सामने तीन पोस्टर भी टंगे हुए हैं और एक --

एक लड़का और लड़की है जिसकी अभी शादी की जा रही है। इसमें औरत जेन्ट्स अभी खड़े हुए दिखाई दे रहे है और यहां पे एक पंडित है जोकि गठबंधन करते--

कपड़े रखे हैं। उसमें एक पोस्टर टांगे है जिसमें लिखा है तुलसी और लिखा है आधुनिक एवेम रेडीमेड विक्रेता।